जैसे की आप देख पा रहे एक बस का सीट है बस के सीट से आपको देखने को मिल रही होगी नील कलर की कुछ नीले कलर की है कुछ काले कलर की है। बस की छत आपको नीले कलर की देखने को मिलेगी। उसके साथ आपको--

लाल कलर की पीली मिट्टी दिख देखने को मिल जाएगी नाव मे लकड़ी लेके हाथ से कुच्छ लोग अपने नाव भी चला रहे ने नाव मे आपको सफ़ेद कलर की दिख जाएगी।

उसे आपको बोर्ड दिख रहा होगा जोकी सफ़ेद कलर का बोर्ड है। सफ़ेद कलर के बोर्ड मे हरे हरे कलर से कॉफी लिखा हुआ है। उसीके साथ आप देख पाएगे की बगल मे आपको एक सीडी दिख रही जो लोहेकी--